ये मस्जिद है मस्जिद में यहां अल्ला को याद करते हैं मस्जिद में पंखा भी दिखाई दे रहा है सफेद कलर का बिल्डिंग है नीले कलर का जो गेट है और यहां पे जा करके लोग अपने आत्मा को शांति के लिए भगवान खुशी के लिए अल्ला से मांगते हैं।

ये प्रधान डाकघर है यहाँ पर लोग अपना लेटर लाते हैं डालने के लिए कुछ बाइक भी खड़ी हैं कुछ आदमी भी बैठे हुए हैं यहां पर बात कर रहे हैं ये भारत का बहुत ही बढ़िया संदेश पहुँचाने का घर है ये डाक घर बड़ा डाकघर हैं।

यहां पर बिजली है ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है ये किसी कंपनी का टॉवर है जो नेटवर्क से बात करवाता है जनरेटर भी रखा हुआ है।

टाइल्स भी लगा हुआ है मकान में गेट बड़ा सुंदर है। गेट पे बड़ा सा नेम प्लेट लगा हुआ है नेम प्लेट दिखाई नहीं दे रहा है और पाउडर है कचरा भी पड़ा हुआ--